यह अच्छी तरह पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्य-- महावि--के मुख्यतः मुख्य गेट है जिसके बाहर एक--

इस चित्र में इस महाविद्यालय की भव्यता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है इसमें कई रौशन दान और दरवाजे है और रात के समय लाइट से जो जगमगा रहे है।

कुछ दीवारों पे रंग नही है और कुछ दिवारे अभी अ दीख-- बनती हुई दिख रही है आस पास घने वृक्ष लगे हुए है और यह भव्य दिखाई दे रहा--

बोहोत सारे मजदूर यहाँ पर दिखाई दे रहे है और इसको बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियाँ यहाँ पर फैली हुई पड़ी है।

यह चित्र शाम के समय का हैं सूर्य अस्त हो रहा हैं और शाम ढल रही हैं।